उस नदी के पीछे दो पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक खाली जमीन है।

इस रैली में एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक कपड़ों की दुकान है।

दुकान मे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

यह एक रोड है जिस रोड के पास बहुत सारी दुकाना है।

एक दुकान के पास रिक्शा खड़ी हुई है।

इसमें एक बहुत सारी है।

और उसके बराबर में दुकाने भी दिखाई दे रही हैं।

कुछ लड़के नहर के पास खड़े हुए--

खाली जमीन पड़ी है उस घर के बाहर।